यह एक प्लॉट है और उसके पीछे घर बने हुए है पीछे हरे भरे पौधे भी लगे हुए है पेड़ भी हैं और यहां ---